और झूले जैसे लगे हुए है जो कि रहा है हरे घास हैमिटी हे एक पाइप नजर आ रहा है।

एक मॉल है मॉल मे बहुत सारी लाइटे जल रही है नीचे फर्श है।

कोई सामान तोल रहा है इस में कोई चीज़ दिखाई दे रहा है व्हाइट पन्नी में दिखाई दे रहा है केक लगा हुए है और बहुत सारा है।